इस इमेज में मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है और उसमें कुछ खिड़कियां है दिखाई दे रही है जिसमें कांच लगी हुई है।

और कुछ बोतल दिखाई दे रहे है जो व्हाइट कलर का है जिसमें ब्लू कलर का स्टिकर चिपका हुआ है।

के है क्रीम कलर के है और कुछ छोटे-छोटे घास दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

इस इमेज में मुझे मुझे एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो मिट्ठी कलर का है और छोटे - छोटे घास दिखाई दे रहै है जो ग्रीन कलर के है।

अब बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है ओर दीवार दिखाई दे रही है जी येलो कलर की है ओर कुछ घरे दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है जिस मे कुछ खिड़किया ए दिखाई रही है।

वो ऑरेंज कलर का है और पैंट मिट्टी कलर का है और कारपेट दिखाई दे रहा है जो --

इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और उसमें बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की हैं।

ओर कुछ पुतले दिखाई दे रहै है जो सरारा पहने हुए है और लहंगा पहनी हुई है।

और बैनर दिखाई दे रहा है और कुछ तारे दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और एक कुर्ता दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।

और दो बोट दिखाई दे रहे है और कुछ टेबल्स दिखाई दे रहे है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के है और दो बैग दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और क्रीम कलर का है।

इस इमेज में मुझे ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और मिट्टी कलर का है।

इस इमेज में मुझे ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और मिट्टी कलर का है।

और बहुत सारे टेबल्स दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कलर के हैं ऑरेंज कलर के है और गोल्डन कलर के है।

इस इमेज में मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और कुछ बासे दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है।

और दो गाड़ी दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है सिल्वर कलर की है और एक छोटा हाथी दिखाई दे रहा है जो व्हाइट --

और उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं जो येलो कलर के हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है जो रेड कलर से है और ग्रीन कलर से और ब्लैक कलर से लिखा हुआ है।

और यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और कुछ आईना दिखाई दे रहे है और बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

और इसमें कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे सामने रखे हुई है कुछ बोरे दिखाई दे रहै है जो व्हाईट कलर के है।

और कुछ ईंटे दिखाई दे रही है और कुछ सीढ़िया भी दिखाई दे रही हैं जो ग्रे कलर की है।

और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है जो व्हाईट कलर की है और बहोत सारी कुर्सियां --

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

और जो सोफे दिखाई दे रहे है जो मिट्टी कलर के है और कुछ लोग दिखाए दे रहे है जो यहाँ पर बैठे हुए है।

इस में मुझे एक बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमें कुछ लाइनें बनी हुई है जो व्हाईट कलर की है।

और कुछ ट्रक दिखाई दे रहै है जो येलो कलर के है और ब्लू कलर के है और एक घर दिखाई दे रहा है जो व्हाईट कलर --

लड़की दिखाई दे रही है जो बैगनी कलर का टॉप पेहनी हुई है ब्लैक कलर का जीन्स पहनी हुई है।

लड़की दिखाई दे रही है जो बैगनी रंग का टॉप पहनी हुई है और ब्लैक कलर का जींस पहनी हुई है।

और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है जो ब्लैक एंड व्हाइट --

इस इमेज में मुझे बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहे है जो येलो कलर के है और ब्लैक एंड व्हाइट कलर है और कुछ--

और कुछ बाइकें दिखाई दे रही है और कुछ छोटे-छोटे घास दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।